यह गया है और रेड यूस किया गया है और बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा बैनर दिख रहा है।

बस के आगे एक आदमी खड़ा हैं जिसने पिंक कलर का शर्ट पेहना हुआ हैं।

यहां पर मुझे बहोत सारे बोट औ या नाव नजर आ रहे हैं जो कि वाइट कलर के और रेड कलर के हैं और उसके--

और मुझे इस ग्लास की दीवार पर कुछ वो बैनर्स भी चिपके दिख रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा बैनर नजर आ रहा है जो सफेद कलर का है और उसके ऊपर रेड कलर के--

अ इंक कुछ लिखा हुआ है और ब्लैक कलर से भी कुछ लिखा हुआ है और मुझे उसपर एक इंसान का आधा फेस नजर आ रहा है।

और मुझे एक काले सा बाइक नजर आ रहा है और मुझे एक घर नजर आ रहा है।

यहां पर मुझे एक क्लास रूम नजर आ रहा है इस क्लास रूम की दीवारें गुलाबी है।

इन जैसा नजर आ रहा है जो शायद कूलर है और मुझे दो लड़कियां नजर आ रही है जो बैठी हुई है।

यहां पर मुझे एक रूम का कोना नजर आ रहा है मुझे एक टेबल नजर आ रही है टेबल के बगल में एक--

हल्का गुलाबी नजर आ रहा है मुझे स्विच बोर्ड्स नजर आ रहे हैं मुझे दरवाजे का नॉब नजर आ--

यहां पर मुझे एक स्टेशनरी शॉप का एक काउंट शेल्फश का कोना नजर आ रहा है।

मुझे चार्जर नजर आ रही है मुझे कुछ और चीजे भी नजर आ रही है और मुझे शेल्फ नजर आ रहा है।